ये वो बंगला भाषा में लिखा हुआ नजर आ रहा है। नीचे कुछ गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। एक कार खड़ी है। एक आदमी मोबाइल से बात कर रहा है।